यहाँ सामने की ओर बहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो अपने-अपने काउंटर पर बैठे हुए हैं सामने की ओर कम्प्यूटर को चला रहे हैं।

यहाँ सामने की और एक लम्बा सा रास्ता दिखाई दे रहा है जहाँ ऊपर की और बोहोत सारी लाइट्स भी जल रहीं है।